तीन लड़के बैठे हुए हैं एक औरत है जिसने चाय पकड़ी है।

और पीछे काफी सारे बड़े पेड़ हैं और एक आदमी खड़ा है।

जो कि काफी बड़ी शॉप है एक दाम है।

और काफी सारी बाइक्स लगी हुई है।

अलग अलग कंपनी के मोबाइल है।